और यहां पर काफी सारी कार भी दिखाई दे रही है।

सारे बच्चे पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे।

पीछे दीवार पर ब्लू कलर का बोर्ड --

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

यह एक कपड़े की दुकान दिखाई दे।--

यह एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।

जो कि ड्रिल मशीन से काम करता हुआ।

यह एक दारू की दुकान दिखाई दे--

दुकान के बाहर काफी सारी बाईकें भी दिखाई दे रही--

यह एक कपड़े की दुकान दिखाइ दे रही--

यह एक फोटोग्राफी की दुकान दिखाई दे रही--

यहां पर काफी सारी मिठाइयां दिखाई दे रही है।

यहां पर बाहर काफी सारी बाईकें भी दिखाई--

और ऊपर कृष्ण जी की मूर्ति भी दिखाई--

और ऊपर लाइट भी दिखाई दे रही है।

यह एक गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है।